मुझे ठेला दिख रहा है ठेले पे बहुत सारे फल फ्रूट दिख रहे है यहा पर आम दिख रहा है यहा पर टमाटर दिख रहा है यहा पर बिही दिख रहे है यहा पर सेव दिख रहा है यहा पर तरबूजा दिख रहा है यहा पर खर्भुजा दिख रहा है।

यहाँ पे बिल्डिंगे भी बनी दिख रही हैं और बहुत सारी दुकानिया भी दिखाई है यहाँ पर बहुत सारी आदमी भी दिख रहे है यहाँ पर बहुत सारी आदमी भी दिख रहे है बहुत सारी औरते भी दिखाई दे रही है।

गाड़ी दिखाई दी यहाँ पे मुझे बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे है यहाँ पर मुझे घर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे आदमी दिखाई दे रहे है यहाँ पर मुझे एक ट्रौली दिखाई दे रही है इसमें --

यहाँ पर रंग_बिरंग कपड़ो का मार्केट दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

मार्केट दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहा गाड़ियां दिखाई दे रही है बस दिखाई दे रहे हैं ट्रक दिखाई दे रहा ऑटो रिक्शा भी दिखाई दे रहा है।